नीचे काफी सारे क्रू मेंबर्स हैं।

शोकेश में बहोत सारे सामान दिख रहे हैं।

अंदर बैठने के लिए बिठाई भी है।

और एक पूल भी दिख रहा है।

कॉपी किताब का दुकान भी है।